यह एक बोहोत ही प्राचीन मंदिर है यहाँ पर सभी की मनोकामना पूरी होती है। यह बोहोत ही भीड़ --

इस कंपनी में कम बहोत सारे सिस्टम भी हैं। इस कंप्यूटर में बहोत सारे भी है और अब ये --

आपके सामने एक पीसी भी ऑन पड़ा हुआ है और बोहोत सारी फ़ाइलस और पेपर्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं।

यहाँ पर बोहोत सारे बैंक है ऐक्सिस बैंक ईस एँ --

यहाँ पर कॉलेज के बच्चों की फ्रेशर पार्टी हो रही है यहाँ पर बहोत सारे बच्चे आकर बैठे हुए हैं और मंच एकदम खाली हुआ है।

आगे एक पोस्टर लगा हुआ है उसपे लिखा हुआ है फ्रेशर पार्टी आगे कुर्सियाँ भी रखी हुई हैं।

एक बोहोत ही बड़ा बिल्डिंग है। बिल्डिंग में हजारों लोग काम करते हैं और यहाँ का मौसम भी बोहोत ही सुहावना है।

यह एक आदमी है जो एक ब्यूटी पार्लर में आया हुआ है और अपने फोन से सेल्फी ले रहा है। अ टेबल पर --

है और एक बोरा नीचे भी गिर हुआ है।

इस प्रवास को अलार्म से रंगा जा रहा है और अभी सिर्फ आदी ही रंगा वट पूरी हुई है।

यह रेलगाड़ी है। यहां पर सभी और रेलवे स्टेशन है। यहां पर बोहोत सारी रेलगाड़ी आई हुई हैं और अभी --

यहां पर फुटबॉल की गेम हो रही हैं और यहां पर बोहोत ही भीड़ लगी हुई है। यहां पर बोहोत ही बढ़िया टूर्नामेंट हो रही है।

अं यहाँ पर हजारों आदमी ई इस मैंच को देखने के आए हुए हैं और इस मैंदान को चारों ओर से घेर लिया गया है।

एक आदमी मछली धो रहा है और एक आदमी मछली को छील रहा है और उसे काटकर आदमी को दे रहा है।

और आज का और यहाँ पे मौसम बहोत ही सुनहरा दिख --

बोहोत सारे सीजन बैट डबल सीजन बै बैट सब ए बैट और बॉल भी रखे हुए हैं।

यहाँ पर सीजन बॉल खन्ना बाल सैंपल बाल सभी बॉल रखे हुए हैं और और यह बेचने के लिए रखे हुए हैं।

और चारों और नीम के पेड़ और आम के पेड़ लगे हुए हैं।

स्टेज को चारों तरफ से फूलों से सजाया गया है और लाइटिंग भी अच्छी की गई है।

ये एक पौराणिक मंदिर है। यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर अ जो भी --

यह एक एकेडमि है। इस अकैडमी का नाम विज़न क्लासेस है। यहां पर एनडीए एनए सीडी --

टीएटी एयरफोर्स एक्स एयरफोर्स वाई सभी चीजों की तैय्यारी की जाती है।

ये एक हॉस्पिटल है इस अस्पताल का नाम आशियाँन --

और पीछे बहुत ही सुंदर नज़रा है पीछे एक बहुत बड़ी नदी है और उसके बीच में --

टाली में डाल रहे हैं और कुछ उसे उठाकर कहीं और ले जाकर उसे फेंक रहे हैं।